तिरंगा झंडा का लोहा सा गड़ा हुआ है और ब्लैक कलर की दीवाल बनी हुई है।

बाइक खड़ी हुई है और भी बहुत सारी ग्रीन कलर की बिल्डिंग है।

और ग्राउंड के बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हैं और बाजू में एक और बाउंड्री है।

और भी लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र के अंदर एक बहोत बड़ा हाउस है जिस पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और बहुत सारे --

और ग्राउंड में हरे हरे घास लगे हुए हैं।

इस ग्राउंड के बाहर बड़ी सी बिल्डिंग है।

बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं और नारियल की पेड़ भी है।

इस चित्र के अंदर एक लंबी सड़क है।

बगीचे है जिसमें गमले पर बोहोत सारे पौधे लगे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर एक सेलून की दुकान है जिसमें एक लड़का--

और नीचे जमीन पर व्हाइट टाइल्स लगे हुई है।